पतरी दिखाई दे रही है काले कलर की और पत्रा दिख रहा है।

और यह एक ढाबा या बार जैसा दिख रहा है इसमें बहोत सारे आदमी ही आदमी बैठे हुए है वो --

और ब्राउन कलर का टेबल पे लकड़ी रखा गया है।

यह एक जिम दिख रही है जिसका डंबल्स दिख रहा है डंबल्स पिंक कलर का है और --

चेयर रखी है और एक आदमी दिख रहा है जिसकी शक्ल नहीं दिख रही है ये विंडो दिख रहा दरवाजा दिख रहा मीटर दिख रहा है।

यह एक जिम है और जिम में चार्ट लगाई गई है लेडिस और जेंट्स की।

इस जिम का कलर रेड और ब्लैक में डेकोरेट किया गया है।

और इसमें विंडो जैसे बने हुए हैं उनकी खिड़की पर व्हाइट कलर का बॉर्डर है कांच लगे हुए हैं।

और इसे स्नेही होम्योपैथिक स्टोर्स लिखा हुआ है इसमें एक आदमी बैठा हुआ है।

इस दुकान में लिखा हुआ है भाड़े थी मणशे सिद्धि विनायक डे --

और इसका खंभा कलर किया गया है।

हर चीज रखा है कैंची रखा है पेन रखा है।

और ब्राउन कलर से दीवार को बॉर्डर में कलर किया गया है।

यहां पे पंखे दिख रहे हैं सफेद कलर की चेयर दिख रही है।

आ नीला कलर का ऐसे रखा हुआ है पीला कलर का दिख रहा है।

यह एक दीवाल दिख रहा है दीवाल की कलर सफेद कलर की है।

ग्राउंड में स्टेज बनाया गया है फोटो शूट करने के लिए एक सर्कल सा बनाया गया है।

दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

ऊपर पंखा लगा हुआ है व्हाइट लाइट लगी हुई है।

यह एक मां मंदिर दिख रहा है और माता रानी दिख रहे --

कुछ औरते हाथ जोड़के नीचे बैठी हुई है।

एक आदमी ने नीली कलर की शर्ट पहनी हुई है माता रानी का मुकुट दिख रहा है और उनका नाखून दिख रहा है।